बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियाँ देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे गेट देखने को हैं बिल्डिंग के साइड में एक और बिल्डिंग है जो छोटी सी है।

कुछ पेड़ बहुत बहुत बड़े हैं तो कुछ पेड़ बहुत छोटे छोटे हैं और उन पर बहुत सारी लिपसे भी दिखाई दे रही है। रास्ता बहुत लंबा है और रास्ता बीच में से कटा भी हुआ है।

पिक्चर में भी एक बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है और पार्क में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है पेड़ कुछ बड़े है तो कुछ पेड़ छोटे है और --